एरर कैसे ढूँढी जाय और कैसे उनको सही किया जाय इस पर हमारे एरर ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है
मैंने इस एक्सट्राचार डॉट पह्प का प्रयोग किया है और इसका कारण यह है कि जब हम इसे रन करते हैं चलिए पीछे चलते हैं extrachar पर क्लिक करेंहमें यह पारसे एरर इन एरर मिलती है और यह सब और लाइन 6 पर
हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं या हम क्या अपेक्षा नहीं कर रहे हैं इससे संबंधित हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है
हम लाइन 6 पर जाते हैं जो कि यहाँ है और पहली नज़र में हो सकता है यह ठीक लगे
किन्तु वास्तव में हमें यहाँ पर एक अतिरिक्त कोष्ठक मिला है अतः हम इसे हटा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यह अब कार्य कर रहा है
और अब यह ढूँढने में काफी सरल है
हालाँकि जब आप गणितीय हिसाब जैसा कार्य करते हैं उदाहरणस्वरुप जोड़ना तुलना आदि यदि आप इस प्रकार के गणितीय हिसाब कर रहे हैं और आप अपने कोष्ठकों का ट्रैक खो देते हैं
कभी कभी यह हल करना बहुत सरल होता है
जब हम इसे रन करेगें तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है
इसने कोई एरर्स नहीं दिया
किन्तु यदि मैं एक अतिरिक्त कोष्ठक यहाँ जोड़ता हूँ हमें पारसे एरर मिलेगी
जब आप जटिल इफ statementsस्टेटमेंट्स या पेंचीदा गणितीय ऑपरेशन हल करते हैं आपको जाँच लेना चाहिए कि कोष्ठक समान हों
बिलकुल निश्चित कर लें कि आप हर कोष्ठक को जाँच रहे हैं या कुछ और जैसे कि कुछ अक्षर जो वहाँ दिखाई देंगे
उदाहरण के लिए चलिए इसके आगे आ लिख देते हैं
देखिये जब हम वापस जाते हैं हमें अभी भी पारसे एरर मिलती है
चलिए इससे हटाते हैं
इसे रिफ्रेश करें अभी भी पारसे एरर मिल रही है
अच्छा तो आपको पता है कि आपने कुछ टाइप किया है
चलिए उसको हटा देते हैं
अच्छा तो दूसरा मैं आपको मिसिंग पेज दिखाने जा रहा हूँ
चलिए मैं आपको इसकी एरर दिखाता हूँ
missingपह्प पर क्लिक करें
अच्छा तो हमें लाइन 9 पर अधिक पारसे एरर्स मिली हैं
चलिए नीचे चलते हैं और लाइन 9 कहाँ है
अर्धविराम
अच्छा माफ़ कीजिये वास्तव में यह अभीष्ट नहीं था
अतः चलिए पुनः रिफ्रेश करते हैं
तो हमें लाइन 18 पर पारसे एरर मिली है
चलिए लाइन 18 पर चलते हैं
अच्छा अब लाइन 18 यह लाइन यहाँ है जहाँ मैं संकेत कर रहा हूँ लाइन 18 है
अच्छा तो लाइन 18 में क्या ग़लती है
वास्तव में लाइन 18 पर कोई भी विषय वस्तु नहीं है
तो हम कैसे संभवतः एक एररपा सकते हैं
और इसका कारण है जो मैंने पहले कहा था कि इस स्थान पर जाँचें
अतः हमें कुछ ऊपर की लाइन्स जाँचनी होंगी मानिए 4 या 5 लाइन्स ऊपर की
हमारे पास एक इफ statementस्टेटमेंट है इफ पोस्टेड यूजर नामे इक्वल्स एलेक्स एकोecho यू ओवन फ्पेकेडमी एल्से एचो हेलो नामे
हम कह सकते हैं कि हमको इस इफ statementस्टेटमेंट के लिए शुरुआती कर्ली कोष्ठक और अंतिम कर्ली कोष्ठक यहाँ पर मिला है
यह कार्य क्यों नहीं कर रहा है160
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ ऊपर पहले से ही एक इफ statementस्टेटमेंटशुरू किया है
तथा यह हाशिया यानि इन्डेन्टेशन का उद्देश्य और उपयोगिता है
मेरे लिए जब मैं इसको अनुभव से देखता हूँमैं जानता हूँ कि यह कोष्ठक यहाँ इन्डेन्टेड है वह कोष्ठक यहाँ उसी लाइन में इन्डेन्टेड होना चाहिए
इसी कारण से यह यहाँ नहीं है
अतः यदि यह वहाँ था और वह वहाँ इन्डेन्टेड था तब मुझे यहाँ ऊपर के पिछले इफ statementस्टेटमेंटसे पता होना चाहिए कि ब्लॉक कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर समाप्त
किन्तु यहाँ ब्लॉक यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पर कोई भी अंत कोष्ठक नहीं है
मैं इसे यहाँ रखूँगी
और जब हम इसे रन करते हैं और आपको यह मिला यह अब कार्य करने लगा है
अतः यदि आप अक्षर भूल जाते हैं तो आप एरर्स के लिए अजीब स्थान पर पाएँगे
वास्तव में यह एरर के लिए अजीब स्थान नहीं है क्योंकि हम एल्स लिख रहे हैं ब्लॉक की शुरुआत और ब्लॉक का अंत
और हम क्या चाह रहे हैं कि इस ब्लॉक का अब एक अंत हो क्योंकि यह वह ब्लॉक है जिसका अंत नहीं किया गया है
अतः हम कह रहे हैं कि लाइन एरर वास्तव में यहाँ नहीं है क्योंकि हमें यहाँ ब्लॉक का एक अंत चाहिए
अब यह कार्य करेगा ठीक है
अतः कुछ लाइन्स ऊपर देखिये और देखिये कहाँ एक एल्स बिना अंत के हो सकता है या कोई अन्य अक्षर छूट गया है या कुछ और जिसकी आपको आवश्यकता है नहीं है
अब चलिए गेटपोस्ट डॉट पह्प को देखते हैं
मैंने सिर्फ इसे प्रदर्शित करने के लिए एरर रिपोर्टिंग ई अल्ल का प्रयोग किया है
यह डेमोन्सट्रेट करने के लिए
इस प्रकार की एरर को बताने जा रहे हैं
इसका मतलब सारी एरर्स नहीं है
यह सभी एरर्स की विस्तृत सूची नहीं है जो रिपोर्ट की जा सकती है
यह इस फंक्शन के लिए केवल एक मापदंड है
यह हमें कुछ एरर्स देखने की अनुमति देता है जोकि उपयोगकर्ता आमतौर पर नहीं बोलते हैं
मेरा मतलब यदि आपको अपनी खुद की वेबसाइट प्रारंभ करनी होती तो आप इसका उपयोग न करते
किन्तु मेरे पास इस पर एक ट्यूटोरियल है जिसे आपको देखना चाहिए
अतः यह एक गेट पोस्ट एरर है
चलिए यहाँ चलते हैं
अच्छा तो हमें एक दाता नामक वेरिएबल मिली है
यह नामे नामक गेट वेरिएबल है
हमारा कोड कहता है यदि यह वेरिएबल डाटा मौजूद है तब डाटा एकोकरिये और यह एक साधारण प्रोग्राम जैसा प्रतीत हो रहा है
यहाँ पर कोई सही एरर नहीं है
हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले रहे हैं और सबकुछ ठीक से कार्य कर रहा है और यहाँ पर लाइन ब्रेक एरर या लाइन टर्मिनेटिंग एरर दोनों में से एक भी नहीं है
हम कुछ नहीं भूले हैं हमें इसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है
किन्तु हम जब इस पेज को रन करते हैं हमें यह नोटिस मिलती है
अब यह एक पारसे एरर नहीं है जो आपने पहले देखा
यह एक नोटिस है
और इस एरर के रहते पेज ठीक से कार्य नहीं कर सकता
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ नामे इक्वल्स एलेक्स लिखता हूँ और यह एरर चली जाती है
यह दर्शाता है कि वास्तव में हमारे कोड में यहाँ पर कोई भी ग़लती नहीं है किन्तु पहले क्या ग़लत था यह था कि यह डाटा वेरिएबल पूर्ण नहीं था
यह उसी के समान है कि डाटा बिलकुल खाली है
चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ एचो वेरिएबल एलेक्स और यह लाइन 5 है
चलिए रिफ्रेश करें
अनडीफाईन्ड वेरिएबल एलेक्स अनडीफाईन्ड इंडेक्स नेम अतः हम क्या कर रहे हैं ठीक है चलिए मैं प्रारंभ से शुरू करता हूँ
यह अधूरा है यदि नेम का विस्तृत विवरण हेडर में नहीं किया गया है
इसलिए डाटा खाली है और इसलिए हमें एररUndefined इंडेक्स मिली बिलकुल वैसे ही जैसे हमें अनडिफाइंड वेरिएबल मिला था यदि हम वेरिएबल एको करवाते हैं जोकि निर्धारित नहीं किया गया है
अतः जैसे ही हम यहाँ कोई डाटा रखते हैं यह एरर चली जाती है
चलिए इसे रिफ्रेश करें
यदि आपको इस शुरुआती एरर से छुटकारा पाना है तो आपको बस इतना करना है कि इस लाइन के बीच में या शुरू में एक ऐट चिह्न लगा दीजिये
जब हम रिफ्रेश करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कोई भी हेडर निर्धारित नहीं किया गया है
कोई भी गेट वेरिएबल निर्धारित नहीं की गई है
और जैसे ही हम नामे इक्वल्स एलेक्स लिखते हैं हमारा नाम एको होता है बिलकुल उसी तरह जैसा कि कोड यहाँ दर्शा रहा है
यद्यपि आप इफ दाता एक्सिस्ट्स का उपयोग कर रहे हैं तकनीकी रूप से यह अभी भी मौजूद नहीं है यदि यहाँ कुछ भी नहीं रखा है
तो इसको देखिये
अभी के लिए बस इतना ही
अंतिम भाग में मैं तेज़ी से अगले दो सामान्य एरर्स के बारे में बताऊँगा
वहाँ पर मिलते हैं
यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है
देखने के लिए धन्यवाद